पीछे काफी बड़े-बड़े वृक्ष हरे-भरे हैं।

सामने जो है कुछ बर्तन रखे हुए हैं।

ये किसी कंपनी में वर्कर है।